ये जो हम देख रहे है जैसा कि ये पंचर की दुकान है। काफी बड़ी दिखाई दे रही है काफी अच्छी है।

जैसा कि हम देख रहे हैं काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। बल्ली बंधी हुई बांस बंधी हुई है।

और इस काफी ऊंचाई है और इन बल्लियों से कई फायदा होते हैं। जैसे कि उम्म्म कई महीने यूज कर सकते हैं। लिंटर हो गया या ये ठंड वगैरा है। मतलब सही जगह पर यूज की जाती है ये।

और इसमें कई रूम दिखाई दे रहे हैं। हम बाहर से देख रहे हैं। काफी अच्छा साफ सुथाई दे रहा है। ये काफी अच्छा अअअ हॉस्पिटल है।

ये काफी अच्छा किसी का घर बना हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी सजावट की है। दो मंजिल घर बना है। ग्रिल फीरिल लगी हुई है।

यहाँ ठहरने की विवस्था ज़ी बनाई हुई है। काफी अच्छा मंदिर बनाया है। बोहोत बड़ा मंदिर बना हुआ है सा और मंदिर की पास काफी जगह भी है। पेड़-पौधे भी लगे हुएं हैं। ये मंदिर बाला जी का मंदिर है। इन पर काफी लोग भरोसा करते हैं।